यहां पर प्लाईवुड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारी लाइटे जली हुई हैं।

यह एक बस की तस्वीर है।

यहाँ पे तकिया दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई है।

यहां पे एक जनरेटर लगा हुआ है।

यहां एक अदिति इंन होटल का नाम है।

यहां पे एक टेंट हाउस लिखा हुआ है।

यहाँ पे बैंगन दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

इसके ऊपर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

यहां पर पंखे लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

यह एक मोबाइल की दुकान है।

यहां पर एक लैपटॉप रखा हुआ है।

यहां पर डमरू टंगे हुए हैं।

यहाँ पर बहुत सारी चूड़ियां और माला रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारी लाइटें सजावट के लिए लगी हुई है।

यहां पर बहुत सारे बैलूने दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर सजावट के लिए बहुत सारी माले लगे हुए हैं।

जिसको स्टील से चारो ओर घेरा हुआ है।

यहा पर पंखे लगे हुए हैं।

यह एक दुकान की तस्वीर है।

जिन में पैनासोनिक लिखा हुआ है।

यहां पर अलग अलग तरह के पोस्टर लगे हुए हैं।

यह एक पंडाल की तस्वीर है।

यहां पर बहोत सारी लाइटे जल रही है।

यहां पर रेड कारपेट बिछा हुआ है।

यहां पर सीढ़ी लगा हुआ है।

यह एक राशन दुकान है।

यहां पर एक कुर्सी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे पानी की बोतलें रखी हुई है।

यह एक कपड़े की दुकान है।

यहां पर बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे डिब्बे भी रखे हुए हैं।

यहां पर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।